जे_सी_बी दिख रही है वो मतलब खोद रही है उसके वहाँ पर बहुत सारा पेंट है दिखाई दे रही है।

बहोत सारी मतलब गिफ्टें दिखाई दे रही गिफ्टें ऑक्टोपस की मूर्ति भी पो पो रखी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

वाइट कलर में दिख रही है वहापर कुछ काला भी कलर दिख रहा हैवहापर लाल कलर का भी दिख रहा है और चीज भी मुझे वाइट कलर की दिख रही हैबोहत सारी वहापर तस्वीर मतलब कलर में न सात ]

ये कुछ एक बो-बोहत सारा बक्सा सा लग रहा है। उस बक्से मा दो ताले भी लगे हुए है। वो बंद ताले दिखाई दे रहे है। वहाँ पे कुछ उजाला सा भी हो रहा वहाँ पे कुछ बैठे--

टाइप का लग रहा है ऊपर टाइप में कुछ बच्चे भी मतलब अन-ते कुछ देख रहे है नहा रहे है कुछ ब्लैक बच्चे ब्लैक में लाल कलर की